यहाँ पर सड़क है। इस समय अड़क पर बहुत सारे भी भीर-भार लगे हुए हैं।

बिजलियां जल रही है बैलून --

समोसा लिट्टी और इसमें चाट भी बनाया जाता है हर एक आदमी आते है नाश्ता करते है।

हॉस्पिटल के पास बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे एक चार-चक्का भी लगा हुआ है और यहाँ एक महिला भी खड़ी है।

यहाँ पर प्रेस हो रहा है | यहाँ पर एक आदमी कप कुरता पर प्रेस कर रहा है और मास्क लगाए हुआ है।